और साइड में कुछ गुब्बारे हैं जो कुछ लाल कलर के हैं कुछ सफेद कलर के हैं कुछ नीले कलर के हैं और कुछ हरे कलर के हैं।

फोटो के अंदर एक एनिमल चिकित्सा दिखाया गया है।

इसके ऊपर कुछ बिजली की तार दिखाई दे रही है।

पीछे टावर खड़ा है कुछ पेड़ खड़े है और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बीच में एक ख खंभा खड़ा है जो लोहे का है जिस पर झालर लिपटी हुई --

जिस पर ए_टी_एम भारतीय डाक लिखा हुआ है।

और एक शीशे का गेट बना हुआ जिस पर एक स्टीकर लगा हुआ --

कुछ आदमी खड़े हैं और कुछ आदमी इसके गेट में खड़े हैं।

कुछ पेड़ खड़े हैं जो पेड़ बड़े हैं कुछ पेड़ छोटे हैं।

ऊपर एक लाइट लगी हुई है और ऊपर पीले कलर की छत भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गई--

ऊपर दीवार का कलर सफेद है और कुछ पिला है।

इस फोटो के अंदर एक गार्डन दिखाया गया है।

और गाड़ी खड़ी हुई है जिन पर फूल आ रहे हैं।

साइडों में छोटे छोटे पिलर लगे हुए हैं जो सीमेंट के हैं उनमें तार है।

फेद कलर की टोपी ओढ़े हुए है और सफेद कलर के कुर्ता-पजामा पहने हुए --

और सामने कुछ बड़े बड़े पेड़ दिखाएं गए हैं।

इस फोटो में नीचे की तरफ एक लकड़ी की--

सीढ़ी लगी हुई है जिस पर कुछ आदमी चढ रहे हैं।

नीचे दो काले कलर के मैट हुए हैं और सामने की तरफ दरवाजे पर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

फोटो के अंदर एक बड़ी सी दुकान है।

बड़ा सा घर दिखाया गया--

एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर रॉयल बुलेटिन लिखा हुआ है।

कुछ गेट बने हुए हैं और कुछ खिड़कियां बनी हुई हैं।

ग्रास वन का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

और ऊपर कुछ बैलून लगे हुए हैं जो नीले और सफेद और बैंगनी कलर के हैं।

साइड में एक गेट है जिसके ऊपर फूलों की मालाएं डली हुई हैं।

लाल कलर के टी शर्ट पेहनी है और जींस पेहनी हुई है।

इस फोटो के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिखाई गई है।

संजय एयर कंडीशनर वर्क्स लिखा हुआ है।

सीमेंट की बनी हुई है जिसमे कुछ डिजाइन बने हुए हैं ऊपर से मूर्ति गोल है।

साइड में एक बिल्डिंग है जिस पर नीले कलर की टंकी रखी है।

टेबल्स के ऊपर कुछ बर्तन रखे हुए हैं या मग्गे रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट का चित्र दिखाया गया है।

ऊपर कुछ फोन रखे हैं कुछ कटोरी ग्लास रखे हैं की चम्मच रखी है कोई थाली रखी हुई हैं।

और नीचे फर्श पर प्लाई बिछी हुई है जो लकड़ी की बनी हुई है।

उसके नीचे एक बैनर लगा हुआ है जिस पर कैंटीन लिखा हुआ।

ऊपर की तरफ कुछ बलून लगे हुए हैं

नीचे कुछ आदमी बैठे हुए जिन्होंने सर पर कपड़ा ओढ़े हुए है।

इसमें एक बड़ा सा गेट है उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है जो हरे कलर का है और लाल कलर का--

फोटो के अंदर एक पार्सल ऑफिस दिखाया गया है।

आदमी खड़े हुए हैं और एक कंप्यूटर रखा हुआ है नीचे एक सी_पी_यू रखा हुआ है।

और पार्सल ऑफिसअ लिखा हुआ है।